यह कोई बंदरगाह का दृश्य नजर आ रहा है और यहाँ बहुत बड़े जहाज भी रखी हुई दिख रही है । बंदरगाह काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे लाइटिंग भी लगी हुई है ताकि अँधेरा-अँधेरा से बचा जा सक --

हम देख सकते है की पटेल बुक स्टोर में बुक्स के अलावा भीं बहुत कुछ रखा हुआ है।

और यह पैलेस में हम देख सकते हैं की एक होटल पालेस है और यहाँ पर बड़े-बड़े लोग आकर ठहर सकते हैं।

यह एक प्लेइंग ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड मे हम देख सकते हैं कि बोहोत सारे चीजे रखी गई हैं। यहाँ पर झूले के साथ और भी बोहोत चीजे हैं। यहाँ खेलने के लिए बोहोत कुछ उपलब्ध है।

ये एक फैब्रिक की फैक्ट्री है यहाँ कपड़े की फैब्रिक्स बनाये जाते हैं।

यह मंदिर काफी यहाँ से पुराना चला आ रहा है हम देख सकते हैं की मंदिर का ढाँचा बहुत ही सुन्दर बनाया गया है।

और कार्यालय के बाहर हम देख रहे हैं की बहुत बड़ा-सा ग्राउंड हैं ग्राउंड बहुत बड़े क्षेत्र मे फैला गया हैं।

यह एक रेस्टोरेन्ट है । रेस्टोरेन्ट मे हम देख सकते हैं कि कई सारे लोग आये हुए हैं ।

रेस्टोरेन्ट में बहुत सारे लाइट्स लगाए गए हैं रेस्टोरेन्ट हम देख रहे है की काफी सुंदर सजाया गया है यह हॉल बहुत ही सुंदर लग रहा है क्यूंकि यहाँ पर अलग-अलग लाइट्स लगाए गए है।